इस पिक्चर में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रही है।

ये दुकानदार भी हो सकता हैं।

इस पिक्चर में हमें व्हाइट बोर्ड पर--

इस बस में हमें लोग अंदर जाते हुए दिखाई दे रे हैं।

यहां पर हमें बेंचेज भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

दूर से हमें एक बिल्डिंग भी दिखाई--

इस पिक्चर में हमें एक स्टेज नज़र आ रा है।

इस पिक्चर में हमें बहोत सारी साइकिल्स नजर आ रही हैं।

यहां पर हमें छोटे बच्चों के लिए भी साइकल्स दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में हमें एक चर्च दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है इस हॉस्पिटल का नाम--

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक बोट नजर आ रही है और हमें यहां पर एक छोटा सा--

यहां पर हमें रेड कलर की फ्लावर्स भी दिखाई भी दिखाई दे रही हैं।

इसका कलर हमें व्हाइट ब्लैक दिखाई दे रहा है।

रेड कलर की फ्लावर्स पिंक कलर्स के फ्लावर्स --

यहां पर हमें बहुत सारी कलरफुल लैस नजर आ रही है।

ये लोग पिंक वाइट कलर का केक बना रहे हैं।

पेंटोर्न केयर का सामान दिखाया जा रहा है।

यहां पर हमें पेट फूड नजर आ रहा है।